मास्क लगाया हुआ है जैकेट पहना हुआ है जूता पहना हुआ है इधर एक लेडीज है ।

यहाँ वाटर पार्क है।

यहाँ बहुत सारे मिट्टी भी है।